यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से बाल कटाने के लिए आता है।

यह एक अस्पताल है। यह अस्पताल बहुत बड़ा और सुन्दर है।

यह शांति जीन मंदिर है। यह --

यह एक फूल का दुकान है। यह फूल दुकान बहुत बड़ा और सुन्दर है।

यहाँ पे लोग खाने के लिए दूर दूर से आते है ।

यह एक दुकान है। यह दुकान बहुत बड़ा और सुन्दर है।